यहाँ पे एक पोल भी है और कुछ छोटे-छोटे पेड़-पौधे भी हैं आसमान बहोत ही बढ़िया है ब्यूटीफुल है।

मूर्ति के उस पर बड़े-बड़े पेड़ भी हैं और मूर्ति का रंग एकदम से काला है बढ़िया है ब्यूटीफुल है लाजवाब है।

और गेट का सामने एक लाल रंग की सड़क भी है। उस पर बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ भी है।

यहाँ पे मुझे बोहोत बड़ा-सा बंगलो देखने को मिल रहा है।